यह सभी अलग अलग प्रजाति के हैं एवं यहां अनेकों रंग वाले गमले भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

तथा जमीन पर चारों ओर पत्ते बिखरे हुए नजर आ रहे हैं।

इनमे से एक टिशू पेपर एक सॉस की बोतल एक पानी की बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर कई सारी बाईकों कि कतर लगी हुई दिखाई दे रही है।

तथा एक नीली कलर की बेंच पर कुछ सामानें रखी हुई नजर आ रही है।

जिसके किनारे काले रंग के लोहे के ग्रिल से घेराव किया गया है।

पीछे की ओर दो ट्रेडमिल लगी हुई है जिनमें से एक पर एक सख्श एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा है।

तथा दीवाल पर एक घड़ी लगी हुई है जो काले रंग की है।

जिन पे हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं तथा जमीन पर सूखे हुए घास मौजूद हैं।

तस्वीर में हमें कई सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा दिखाई दे रही हैं।

जो किसी प्रकार के हादसा होने से बचाती है।

इनमें से कुछ लोगों ने हाथों में बड़ी बड़ी मशाल ले रखी है।

उसके किनारे छोटे छोटे लोहे से बने बैरियर्स लगे हुए दिख रहे हैं।

उसके आगे की ओर पानी से भरा तालाब भी नजर आ रहा है।

इस पर सफेद रंग के अक्षर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।